यह खेत के आगे एक पेड़ है।

इस भगवान का नाम है राधा कृष्णा।

सामने मुझे दो बस दिखाई दे रहा है।

यहां आदमी औरत और बच्चे सभी का कपड़ा है।

जमीन के ऊपर खड़ा रखा गया है।

साइन बोर्ड में वेलकम मायूडिया पास लिखा हुआ है।

कोरार में एक बड़ा सा टी_वी भी रखा हुआ है।

सामने एक पेट्रोल रिफिल स्टेशन है।

इस दुकान पर बहोत सारे टायर सेल्फ में रखी हुई है।

इधर दो खिड़की दिखाई दे रहा है।

उसी के साइड में मुझे एक चटनी भी दिख रहा है।

प्लेत का कलर सफेद है।

टेंट के बगल में एक सुंदर सी नदी है।

इस दुकान में झारू डायपर खाने की चीज सब कुछ मिलता है।

पीछे दो लड़के स्कूल यूनिफॉर्म में है।

गाय सफेद और काला रंग का है।

सामने दीवार और एक बहुत बड़ा गेट दिखाई दे रहा है।

सामने मुझे पति पत्नी दिखाई दे रहा है।

इस दुकान का शटर खुला हुआ है।

एक औरत सलवार कमीज में खड़ी हुई है।

सामने एक हरा भरा पेड़ है।

गेट के बगल में नो टू ड्रग्स एस टू लाइफ भी लिखा गया है।